रोड निकला हुआ है जहाँ से गाड़िया सभी वहां गुजरते हैं और बादल भी दिख --

यह एक पेरिस जेन्ट्स सैलून है।